सामने बहुत सारा रोड है एक व्हाइट कार जा रहा--

यह एक बहोत बड़ा चर्च है चर्च में बहोत सारे आदमी--

ऐ इसके चारों तरफ ब्रिज लगा हुआ हैं और इसके।

जिसमें बहोत सारे लड़के गेम खेल रहे है।

यहां पे एक व्यक्ति खड़े है और दो बच्चे भी खड़े है।

आयरन गेट लगा हुआ है।

इसमें दो लड़के खड़े हैं एक आदमी नीचे बैठा है।

शुक्ल द्वारा रेलवे परीक्षण प्लस टू विद्यालय नरकटियागज के--

पे फोन का टैग लगा हुआ हैं और इसमें प्रेशर कुकर भी हैं और--

टहल रहे हैं और एक--

जिसके ऊपर लिखा है महेश्वर सिंह एर्थ --

और इसके बगल में एक--